यहीं पर एक कोंटर है उसके ऊपर बहुत सारे सामान रखे हुए हैं।

और उसके थोड़े बगल में एक और बल्ब है जो बल्ब जल रहे है।

हां पर एक बाइक भी खड़ा है।

और खंभे पर ए_सी लगा हुआ है।

एक दुकान है उस दुकान के ऊपर एक पोस्टर लगा है।

मैदान के बाहर बहुत बड़े बड़े वृक्ष हैं और एक छोटा सा घर है जो मैदान के अंदर है।

एक स्कूल है उस स्कूल के बाहर पांच छे महिला खड़ा है।

साइड में बहुत घास हैऔर एक साइड मे सिंहढी है।

स्कूल के ऊपर एक छोटा सा बल्ब लगा हुआ है।

एक दुकान है उस दुकान के अंदर बहुत सारे बल्ब लगे हुए हैं सारे बल्ब जल रहे हैं।

उसके ऊपर नीले कलर का बल्ब जले हुए है।

एक हाथ में हरे कलर का डब्बा है। उसमें चारों ओर इस्टीकर लगा है। डब्बे में सफेद कलर का दवाइयां भी है।

एक टावर दिखाई दे रहा है।

और पार्क के चारों ओर बहुत बड़े बड़े वृक्ष हैं।

बहुत सारे लाइट जले हुए हैं एक खंभा है उस खंभे के ऊपर एक सी_सी_टी_वी कैमरा लगा है।

और उधर बाहर में बहुत सारे बल्ब जले हुए हैं।

एक रोड है। उस रोड के एक साइड में एक रूम है।